यहाँ बहुत सारे लोग खेल देखने के लिए आये हुए --

स्विमिंग पूल में पानी को रोज प्योरिफाइ किया जाता है। यहाँ रोज पानी का बदलाव किया जाता है।

यहाँ पे एक घर की ढलाई हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे लेबर और मिस्त्री लोग --

घर की ढलाई में लगे --

समारोह का मुनाज़ीम --

पुराने घर बने हुए हैं चारों तरफ --

यहाँ बैंक में बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। जिसके कारण लोग एस.बी.आई. के ऐ.टी.एम. से भी पैसे का निकासी कर रहे हैं।

अपने खेल-कूद में मगन है।